गुड आइटम्स के रेट्स भी उधर लगाके है।

कई सारे बड़े बड़े टेबल्स हैं।

एक नाव में कई सारे लोग बैठ के है।

बूढ़े लोग बाहर गार्डन में बैठे हैं।

पीछे वाइट कलर की प्लेन दीवार है।

ये एक हनुमान मंदिर है।

इस पिक्चर में एक बड़ी बिल्डिंग है।

इधर खाने के आइटम्स कई सारे हैं।

इधर कई सारे इंसान है थोड़े लोग बैठ के है।

एक बड़ा समुंदर है समुद्र के बीच में पानी में बड़े बड़े पहाड़ है।

समुन्दर का पानी नीला है।

इधर एल_जी करके लिख के है अभी एक जगह सुपर करके लिख के है।

इधर एक इंसान बच्चों को पढ़ा रहा है।

इस पिक्चर में एक नदी है।

नदी में एक इंसान बैठा हुआ है।

और एक लड़का खड़ा होके है।

इस बिल्डिंग के बोर्ड पे तेलंगाना लेजिसलेटिव काउंसिल करके लिखा हुआ है।

इधर एक स्लाप बना रहे है।

ये एक बड़ा सारीस का दुकान है।

आसपास पेड़ है टेबल पूरे ब्लैक कलर्स में है।

इस बिल्डिंग के आस पास पेड़ है एक औरत बैग पकड़ के चल रही है।

इस घर में कई सारे ब्राउन कलर के सोफेस है एन्ड ब्राउन कलर के कर्टन्स है।

इधर एक बड़ा जनरेटर --

पेंस थोड़े जगह रखा है और मार्कर्स कई जगह रखा है।

पिक्चर में दो लोग कुर्सी पे बैठ के हैं।

ये एक पुराने दीवार है इसके आसपास कई सारे छोटे छोटे पहाड़ है।

थोड़े छोटे छोटे पेड़ है।

इस पिक्चर एक पार्क का है।

बूढ़े औरत हैं बैठ के हैं पीछे छोटे लड़के खेल रहे हैं।

और थोड़े कॉटन बॉक्सेस है।

तीन कुर्सियां हैं ओ कुर्सी के कलर लाल कलर है और एक फैन एक्जास्टर है एक दरवाजा है।

एक इंसान लाल कलर की टोपी और ब्लैक कलर की बैग पेहन के खड़ा--

इस पिक्चर में कई सारे कार्स खड़े हो के हैं।

बिल्डिंग्स के आसपास कई सारे पेड़ है।

थोड़े लोग ठहर के देख रहे हैं।

पीछे पानी में उनके भक्त है बाजू में ग्रीन कलर का गेट है।